आ एक हाल है के अंदर कुछ ट्रोलियस रखी हुई है।

ये जीम की तस्वीर है जीम में कई सारी वर्कआउट की मशीन से रखी हुई है नीचे ब्राउन कलर का कारपेट लगा हुआ है सफेद कलर की दीवारें हैं और बड़े-बड़े मीरा लगे हुए हैं एक विंडो है|

यह एक दूकान है जो कि एयरटेल मोबाइल की है। और पोस्टपेड प्रीपेड रिचार्ज यहां पर लिखा हुआ है। रेड कलर की टीशर्ट में एक आदमी खड़ा है।

नीचे की तरफ केले और पपीता पड़ा हुआ है। पीछे की तरफ अनार और संतरे लटके हुए भी हैं और टोकरी में रखे हुए भी हैं।

]नीचे न्यूज़ पेपर भी बिछाये हुए हैं। यह सभी एक कांच की एक अलमारी में रखे हुए हैं और मिठाई अलग-अलग प्रकार की रखी है और लड्डू भी रखे हैं।